एहा एक जंगल के द्रश्य ए कुछ दिखत हे।

यह एक ठो कार हे जेला लगत हे शादी के लिए सजाये गए हे बहुत सारा फुल से--